यार चावल खाने से बड़ा फायदा होता है यार चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है चावल खाने चाहिए बिरयानी बहुत --

यार ये तो बहुत बड़ा ग्राउंड है इसमें तो पीछे नदी बह रही है औ --

ये गिरता भी नहीं है इसमें सही है ये यहां पर लोग खड़े हैं।

इसपे मतलब जो सामान वगैरह ढोने में उसका यूज होता है इस ये का ये काफी पहले बहुत देखे जाते हैं लेकिन अब तो थोड़े-थोड़े लुप्त होते जा रहे हैं ये जमाने में डिजिटल सा होगी।

अर् क्लासरूम यार। हम भी कभी जब बच्चपन मे पड़ा करते थे बड़ा मजा आता था। अरे वो क्या दिन थे यार।

प्यारा लग रहा है पहले योगा करते थे ऐसे ही लोग।

यह तो कार है यार यह तो सजी हुई कार है जो --

बड़ा बढ़िया लगता है। कार में एक दूल्हा बुल्हा बैठ के जाता है। श्श्श कार सजी कार --

मेगी ले लो यार मेगी तो बहुत बढ़िया लगती है यहाँ दुकान कितनी बड़ी है बढ़िया दुकान है इसमें सब मिल जाता हैं।

और यहाँ अ पंखे भी बहुत सारे चल रहे हैं। ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे की वो मीटिंग करते है लोग बेसे टाइप से --

लेकिन हम यार स्टील की ग्रिल लगवाएंगे। इसमें बैठने से यार हमे बहोत दूर का चमक जाता है।

येता श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है।

वा पर्दो लग रओ। पर्दो पर यार बड़ी फुल स्क्रीन में ऐसे लग रहो जेसे हम एच_डी देख रहे हैं।

ये दहेज वगैरह में ज्यादा मिलो जब शादी हो तो यही आओ --